दृश्य में बहुत सारी लोग यहाँ पर हैं संक्रमण हट चूका है अब इसका बहुत अच्छा दृश्य है।

जीतना हम र्चचा करे उतना कम हो सकता है ये बु ए बुक स्टोर के बारे में।

जगह है जहां पर जा सकता है बहुत ही अच्छा है।

बहुत सुंदर है अथी --

बहुत यहां पर मेहरबानी और बा।

ये बंधन बैंक का तस्वीर लग रहा है भी है।

दु चार पांच बाइक भी खड़ा है दु चार लोग भी जा रहें।

काफी खूबसूरत नजारा है यहाँ का बहोत ही अच्छा है।

मैदान दिखाई दे रहे है इसके बाहर में --